अंदर की तरफ सीमेंट कर रहा है आदमी बैठे हुए घूमने आए हुए हैं और उनके पत्थरों का कलर पीला है कल है और आसमान में और उसका रंग काला है

ओर मुर्गियों का रंग पीला है काला है ओर चारपाई लगी हुई है जिसका रंग गुलाबी है पेड़ लगे हुए है

जिम में मेट बिछी हुई है जिम का समान है मैं रेड कलर और ब्लैक कलर का है जिम का सामान रखा हुआ है

बिल्डिंग पुरानी से बनी हुई है इसमें बहुत सारे कमरे हैं गेट भी तंबू की है और इसका रंग सफेद है कला है

हां यहां पर यह जंगल है और गेट लगा हुआ है

कपड़ों का लाल है पेड़ पौधे लगे हुए बहुत सारे जिनके पत्तियां का रंग भरा है और ऊपर आसमान दिख रहा है